तस्वीर दिखाई दे रहा है एवं शिशा दिखाई दे रहा है।

तथा विद्युत से चलने वाले पंखे भी दिखाई दे रहे हैं।

तथा विद्युत से जलने वाले रंग बिरंगी बत्तियां भी दिखाई दे रही है।

एवं मकान भी दिखाई दे रहे हैं।

तथा दरवाजा भी दिखाई दे रहा है।

इस दृश्य में मुझे एक मंदिर दिखाई दे रहा है।

था खंबा भी दिखाई दे रहा है।

एवं सीढ़ियां भी दिखाई दे रहे हैं।

एवं फिनाईल दिखाई दे रहा है।

घड़ी दिखाई दे रही है तथा व्यक्ति दिखाई दे रहा है।

एवं धातु की लंबी सीट भी दिखाई दे रही है।

मेज दिखाई दे रहे हैं एवं व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं।

तथा सी सीढ़िया दिखाई दे रही है।

तथा तस्वीर दिखाई दे रही है।

एवम अनेक वस्तुएं भी दिखाई दे रही है।

इस दृश्य में मुझे मस्जिद दिखाई दे रहा है।

विज्ञापन बोर्ड में लगी हुई तस्वीरें दिखाई दे रही है।